और हमें पाइप ली हुई हाथ में नजर आ रही है।

एक आदमी हाथ में मोमबत्ती लिया है ।

तस्वीर के अंदर हमें दिखाई दे रही हैं डलियां रखी हुई हैं।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

टेबल पर बहुत सारी सामान रखा हुआ है पानी की बोटल है ।

हमें अं चार लड़के बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और वो आदमी मछलियां काट रहे हैं।

बाहर भी पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे।

तस्वीर में मैं पानी की बोटलें बिसलरी की--

और शेड दिखाई दे रहा है स्टेडियम में डला है।

तस्वीर में हमें बिल्डिंगे में बनी दिखाई दे रही हैं।

वहां भी बिल्डिंग एक मकान बना है गुलाबी रंग का--

आदमी है महिलाएं हैं और गाड़ियां नजर आ रही हैं सड़क पे--

हमें तस्वीर में हरे रंग की जाली के पास खड़ा आदमी दिख रहा है।

इस तस्वीर के अंदर हमें डॉल्स रखी हुई दिखाई दे रहे हैं।

बिल्डिंगे और हमें हरी-हरी घांस --

तस्वीर में हमें साड़ियां लटकी हुई नजर आ रही हैं और डमी रखी हुई हे दुकान के बाहर --

दया श्री बॉयज हॉस्टल का बोर्ड लगा है।

का बोर्ड लगा है बहुत सारा सामान दुकान में दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें दिखाई दे रहे हैं कुर्सी और टेबल लगे हुए हैं और कारपेट बिछा हुआ है।

तस्वीर में हमें बड़ी सी मछली लाल सफेद काले रंग की दिखाई दे रही है।

और भी आदमी दो नजर आ रहे हैं हमें तस्वीर में--

हमें दो आदमी बाइक पर दिखाई दे रहे हैं।

हरा नीचे कालीन बिछा हुआ है।

और हमें हरे-हरे पेड़ लगे दिखाई दे रहे हैं।

दुकान हमें दिखाई दे रही है खुली है।

बने हुए हमें बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं सफेद और सामने लाल मकान बना है।

और माइक के सामने खड़ा हुआ नजर आ रहा है हमें--

आदमी और औरतें हमें बैठी हुई कुर्सियों पे नजर आ रही हैं।

तीन आदमी खड़े हुए हैं बातें कर रहे हैं स्टेज पर--